दोनों साइड में रूम है अंदर बोहुत सारे आदमी भी --

लाइट बेल लगे हुए हैं और पेड़-पौधें हैं गार्डन है।

मशीन है। ड्रिल मशीन है कपड़े चेंज है बाल काट रहे हैं।

और बहुत जरूरी और बहुत बढ़िया- बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं ।

गुड़ीया हो गया गुड्डा हो गया और बहुत सारा चीजें हैं ।